यह एक बाहर का दृश्य है यहां पे दो ऑटो लगा हुआ है।

यहां पे एक व्यक्ति सड़क क्रॉस कर रहे हैं स्कूटी से उस पे दो लोग बैठे हैं।

कई सारा सामान रखा हुआ है काउंटर में।

एक व्यक्ति दरवाजा सेट कर रहे हैं।

ये एक व्यक्ति बाइक पे बैठ के जा रहे हैं एक व्यक्ति पीछे से धक्का दे रहे हैं।

पेट्रोल पंप वाले खड़े हैं और ऊपर में छजनी भी बना हुआ है।

यहां पे बहोत ही बड़ा फील्ड है फील्ड के और भी साइड में घर बना हुआ है।

कुरकुरे दिख रहा है साइड में एक डस्टबिन का डब्बा भी रखा हुआ है।

यह एक ट्रैक्टर का दृश्य है ट्रैक्टर का कलर है ब्लू कलर ।

साइड में उ नद पुल पे खड़े हैं नदी में पानी भी है।

यह एक बाहर गार्डेन का दृश्य है।

इसमें गेंदे का फूल लगा हुआ है और गुलाब भी हैं और बेले का भी फूल लगाया गया है।

बाइक की शोरूम का दृश्य है।

बैलून से भी शोरूम को सजाया गया है।

टाइल्स का सामान भी नीचे रखा हुआ है पाइप है छोटा छोटा टुकड़ा है टाइल्स का--

आसमान दिख रहा है वाइट कलर का दो कलर में है।

यह एक बाहर का दृश्य है।

पानी के कलर भी काफी सुंदर है और यहां पे हरे भरे घास है लगाए हुए।

डब्बा में भी है दिख रहा है ब्लू कलर का डब्बा है पिंक है हरा है।

यहां पे खूबसूरती से सजाया गया है।

दो व्यक्ति बैठे हुए हैं काउंटर पे।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

यहां पे दो व्यक्ति खड़े हैं और बीच में एक डॉगी बैठा हुआ है।

यहां पे टंकी रखा हुआ है चार ठो।

एक और वोट लगा हुआ है नदी के किनारे उसमें भी कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

यहां पे रखा हुआ है स्टैंड में छे बाल्टिया रेड कलर की है और स्टैंड का कलर भी रेड है।

यह एक बाहर का दृश्य है।